और यह बहुत ही अच्छा आं फील्ड है |

इन लोगों को कठिनाई ना हो दौड़ --

और गाय को बांधा हुआ है गाय बहुत ही सुंदर है गाय हमारी माता भी है।

यह क्लासरूम है इसमें उम्म खिड़कियां भी है और ब्लैकबोर्ड भी है।

रेड टी-शर्ट और ब्लू पैंट पेहना के और इसके साइड साइड में फ्रॉक को टंगा हुआ है और फोन पे करने का भी इसमें पीछे एक लगा हुआ है बरकोड और इसमें बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं।

यह एक बेड रूम है जिसमें ऐसे तो होटल या अच्छे-अच्छे बड़े-बड़े घर के लोग का ही रूम रहता है।